यहाँ पे बोट दिखाई दे रहे है कुछ रेड ग्रीन ब्लू येलो कलर के और दो-दो बड़े टावर दिखाई दे रही है जिसमे से तार जाती हुई नजर आ रही है।

यहाँ पे एक नाव है नाव में पानी भरा हुआ है जिसपे कचरा है दूर हमें टॉवर्स नजर आ रहें हैं और --

यहा पे एक ब्रिज बना हुआ हे जिसमे रोड दिखाई दे रहा है और सामने रेलिंग बनी हुई हे जिससे व्हाइट ब्लैक कलर से पेन्ट किया गया है सामने बहती हुई नदी दिखाई दे रही है हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं।